एक कोलेज का बिल्डिंग का बाहर से फोटो लिया गिया है ये वाला कोलेज --

अंदर पे पार्क के अंदर एक मूर्ति रखा हुआ है और वहाँ पर अ लाइट से सजा हुआ है।

मॉल का बाहर का फोटो है इस मॉल का नाम है पिटर इंग्लेंड ये मॉल पर सामने लिखा हुआ है सिक्स --

ये एक मैदान का फोटो है ये मैदान में ग्रीन घास हुआ है और कुछ गाय है।

मन्दिर के बाहर आलता लगा हुआ है इस मन्दिर का रंग लाल और सादा है इस मन्दिर के उपर ओम लिखा हुआ है।

ये एक कीला का फोटो है इस कीला में लाल ईंटा दे कर बना हुआ है।